यहाँ पर लोग मरीज के नाम लिखा रहे है और परमिशन ले रहे है यह काफी अच्छा है।

यह ऑफिस बहुत बड़ा है।